एक व्यक्ति रस्सी के सहारे नीचे की ओर--

डी_जे भी बज रहा है सभी लोगों ने अलग अलग कलर के कपड़े भी पहन रखे हैं।

चर्चा कर रहे हैं कि गाड़ी कैसे ठीक होगी।